यह एक एक नर्सरी का सीन है जहां पे रेड कलर में एक बॉर्डर लगाया गया है जहां पर आई लव झारखंड नर्सरी लिखा हुआ है।

इस सीन में हमें नजर आ रहा है कि एक अस्पताल का सीन है जो रांची में स्थित--

इस पेड़ में हमें नजर आ रहा है दो पेड़ नजर आ रहा है तथा एक सूखे पेड़ जिसमें लाल टाइप का कुछ फल लगे हुए हैं।

नौका के ऊपर एक जाल है।

फूल का माला नजर आ रहा है और यहां पे कुछ सामान और भी है जैसे एक शीशा नजर आ रहा है जो सामान रखे गए--

सामने एक आदमी नजर आ रहा है तथा विभिन्न प्रकार के पौधे नजर आ रहे हैं।

मंदिर के नीचे नीचे छोटे छोटे दो चार और मंदिर बनाए गए हैं।

ग्राउंड के अंदर बहुत सारे पौधे लगाए गए छोटे छोटे फूल का पौधा है।

दो तीन एल_इ_डी बल्ब नजर आ रहा है।

यहां पे बहोत प्रकार के किताब रखे गए हैं जहां पे एक अलमारी बनाया गया है।

इस पिक्चर एक स्वीट शॉप का पिक्चर है जहां पे भारत फूड्स भी लिखा हुआ है।

सामने एक ऐ_सी रखा गया है।

एक बिजली का खंभा और एक झंडा भी नजर आ रहा है।

दूसरी साइड पे एक प्लेट अ एक टेबल है जहां टेबल के ऊपर पांच प्लेट तथा एक ग्लास --

बेंच के ऊपर बैठने वाले आदमी के पास सामने एक पखा नजर आ रहा तथा कुछ लाइट्स भी उधर लगाए गए है।

हमें दो गमला नजर आ रहा है तथा पाइप से पानी आ रहा है और ऊपर में साइड में कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग है।